यह झरने का सीन बहुत ही सुंदर तथा मनमोहक--

इस जेंट्स पार्लर का नाम ए वन एन_जे_बी पार्लर है।

में हमें दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो बैठे हुए हैं तथा--

यहां पर बहोत सारी टेबल तथा चेयर रखी हुई है।

इसे एक बक्से मे पेपर से कवर करके रखा हुआ है धन्यवाद।

इस शॉप में हमें एक सफेद कलर का पंखा तथा एक काउंटर पर बैठा हुआ व्यक्ति नजर आ रहा है।

घर एक सुनसान इलाके में स्थित है तथा सफेद कलर का घर--

यह रेस्टोरेंट बहोत ही सुंदर है तथा इसमें कई तरह के बोर्ड लगे हुए हैं जिसमें लिखा है द ओनली वे टू ग्रेट वर्क --

इस चित्र में एक सफेद कलर की कार तथा दो अन्य कार जैसे सफेद और काली कार खड़ी हुई है।

जंगल में हमें पांच व्यक्ति भ्रमण करते हुए दिखाई दे रहे है।

इस बायोलॉजी लैब में हमें कई तरह के स्पेसिमेन बॉटल में रखे हुए दिखाई दे रहे है।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

यह चित्र एक घर का है जिसमें हमें कुछ कार्टन दिखाई दे रहे है।

फ्रिज दिखाई दे रहा है जिसका कलर नीला है तथा एक काली चेयर है।

यह अपने पिंजरे में बैठे हुए हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है।

व्यक्ति के तरह तरह के सुंदर कपड़े मौजूद है जिसमें मेंस वियर है स्पेशल तथा पास में--

तथा पास में हमें हरी हरी घास दिखाई दे रही है।

तथा इसमें हमें तीन व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं इस--